इस फोटो में पार्क टाइप का दिख रहा है जिसमें एक बैनर लगा जिसमें कुछ पैरट का फोटो है एक उम्म पैरेट का मूर्ति टाइप का बना हुआ है एक ब्लैक कलर का लोहे का पाइप दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक पेट्रोल पंप दिख रहा है जिसके ऊपर सीलिंग के ऊपर व्हाइट कलर किया हुवा है कुछ एल_ई_डी लाइट वाले लगे हुए हैं।

बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखरे है कुछ लाइट के पोल वगेरा दिखरे है ।

आ जिसमे एक सिगनल दिख रहा है जिसमे एक येल्लो कलर का लाइट लगा हुआ है पर सिगनल का कलर --

कोर्ट का कलर येल्लो कलर का है एक ट्रेन का खिड़की दिख रहा है कुछ --

अ बिल्डिंग टाइप का दिखरा है जिसमे पु पूरा कांच वगेरा लगा हुआ है जो ब्लू कलर में है।

एक हाथ में एक थैला दिख रहा है जो व्हाइट कलर का है और माथे पे एक गमछा लपेटा हुआ है।

यह शायद एक घर दिख रहा है जो येलो कलर का है और कुछ पेड़ वगैरह दिख रहा है।

घर टाइप का बना हुआ है जो जाली का बना हुआ है उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जो रेड कलर का है एक तारा माची दिखरा है।

इस फोटो में हम एक ऑटो कैब का बैनर लगा हुआ दिख रहा है जो ग्रीन और येलो कलर रेड कलर के हैं उस--

कार वाले फोटो बने हुए है बाहर एक सिल्वर कलर का कार लगा हुआ है ।

येलो कलर की लाइट वगेरा जल रहा है कुछ बहार लोहे के पाइप वगेर दिखरे है जो रेड कलर किया हुआ है ।

और एक आदमी है जिसके हाथ में एक बुक है और गूगल पे का बारकोड दिखरा है बाहर एक वाइट एडिटर --

इस फोटो में हमे एक रोड दिख रहा है जिसमे एक वाईट कलर का कार दिख रहा है उसमे एक येलो कलर का नम्बर प्लेट दिख रहा है।

और कुछ बाउंड्री दिख रही है जो वाइट कलर दिख रहे है एक गेट दिख रहा है जो लोहे का है इसमें ग्रीन कलर और रेड कलर कलर किया हुआ है पीछे --

मेउ बस वगेरा खड़े है येलो कलर के है रेड कलर के है एक लोहा --

रोड के बिच में एक घड़ा हुआ है और एक बड़ा सा पेड़ ह--

और एक आदमी दिख रहा है येल्लो कलर का शर्ट पहने हुए है उसके हाथ में एक थैला है कुछ आदमी बाइक पे बे बेठे हुए दिख रहे है।

बन्दे पे एक बैग है जो ब्लैक और रेड कलर में है एक सी_एन_जी ऑटो दिखरा है जो ग्री --

इस फोटो में हमें कुछ रेड अ कलर के घर वर दिख रहे हैं जिसके ऊपर पूरा रेड कलर क किया हुआ है और एक छत दिख रहा है जिसपे बोहोत सारे टेबल टूल रखे हुए हैं

इस फोटो में हमें एक होटेल टाइप का दिख रहा है जिसके बहार एक आदमी माथे पे पगड़ी पह पहने हुए है और ब्लैक जैकेट पहने हुए है बाहर--

और कुछ आदमी दुकान के सामने बाहर खड़े दिख रहे हैं वह अ खड़े दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमें बाहार एक हॉस्पिटल दिख रहा है जो वाइट कलर का है ।

अ अंदर एक बस दिखरा है जो वाइट और ब्लू कलर का है कुछ --

अ आ कुछ ओटो वाले भी दिख रहे है ये येल्लो और पिंक कलर के है बाहर कुछ रोड पे आदमी चलते हुए दिख रहे है बाहर--

किया हुआ है और कुछ वाइट कलर दिख रहे है जो ब्लैक के है और कुछ लोहे का वगेरा दिख रहे है और कुछ पत्थर वगेरा --

और एक घर दिख रहा है जी जिसके बाहार एक बोर्ड लगा हुआ है जो ब्लू और वाइट कलर का है।

इस फोटो में हमें कार वाले दिख रहे है जो वाइट कलर के है कुछ ग्रे कलर के है कुछ बाहर --

और कुछ अ पीपल के पेड़ वगेरा दिख रहे है कुछ स्टोर वगेरा --

इनुनु लाइट फॉर दिख रहे है और कुछ कॉफी का अ शॉप है ।

और कुछ अ पेड़ वगेरा दिख रहे है जो छोटे छोटे हरे कलर के है ।

लगे हुए चूहा टाइप ग्रे है ग्रे कलर के है ।

अ चेयर के साइड में कुछ प्लाट वगेरा रखे हुए है।

अ बोर्ड का कलर ग्रीन और वाइट कलर का है बाहर --

पहले स्कूल खुलेंगे पैकेट वगेरा है और निचे कुछ बोत्तल वगेरा है।

कलर ब्लू और वाइट कलर के ऊपर कुक फूल लगे हुए है जो येलो कलर के --

और उसके बगल में कुछ पेड़ वगेरा दिखरे है पेड़ में कुछ --

इस फोटो में हमें बाइक का शोरूम दिखरा है जिसमे बोहोत सारे बाइक वगेरा लगे हुए है बोहोत सारे--

ग्रीन कलर की कुछ लोग ब्लू कलर की टी शर्ट हुए है एक लेडी --